यहां पर कुछ सरिए लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं ।

और चर्च का जो बिल्डिंग का कलर है वो सफेद और येलो कलर में है ।

येलो कलर के बॉक्स नजर आ रहे हैं एक शेल्फ में बैग्स --

एक झूमर है जो गोल्डन कलर में है।

एक आदमी ब्लू टी_शर्ट में है वो मोबाइल पर बात करते हुए नजर आ रहा है।

बहोत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।